सामान भी बहुत ही अच्छा और डिजाइनर समान है यहाँ कार से रिलेटेड बोहोत सारे टूल रखे हुए हैं।

यहां बोहोत ही ज्यादा ग्रीनरी भी है जो यहां के पैलेस को और भी अच्छा लुक दे रही है।

सामने एक तीन मंजिला बिल्डिंग भी है जो बहुत बड़ी दिखाई दे रही है बाहर यह लोग बैठे हुए हैं।

एक व्हीकल पर भी आदमी बैठे हुए हैं तथा इस पर पीछे से छांव भी आ रही है मौसम हो रखा है।

यह किसी बालकनी के बाहर की तस्वीर है बालकनी में मेट लगा हुआ है जिससे कोई पंछी और अंदर ना आ जाए।

यह एक इलेक्ट्रिकल शॉप है जहां इलेक्ट्रिकल सामान मिलता है कूलर फ्रिज टी_वी आदि सामान यहां मिलता है।

यह बहोत ही खूबसूरत और एक्सपेंसिव कार है पीछे बहोत सारा स्टाफ खड़ा हुआ है।